यहाँ पर पर्दों का कलर ब्रौंन ऑरेंज और ब्लू व्हाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ तस्वीरे दिखाई दे रही--

यहाँ पर एक हाल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारो का कलर ग्रीन और ऑरेंज दिखाई दे रहा है कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारो का कलर व्हाइट ब्लू दिखाई दे रहा है।